काई भी लगा है बईठे हैं चार लोग एक रेंगरे है एक खड़ा है तिमार् है मोटू लोग

ए लोग का कुछ त्योहार हो रहा है मस्त पंखा वनख है लाई फूल उल माइक मे बोल रहे चार-पांच आदमी पीछे खड़े है दो नीचे बैठे है मस्त मस्त--

जेसीबी दिख रहा है घास उस पूरा फुल बिल्डिंग दिख रहा है ए एक दो तीन चार छत का है साइकिल वाइकिल गाडी वाडी पुरा दिख रहा है उस घर का नाम पर नी दिख रहा है मस्त आसमान उस्मान पुरा--